दीवार पे भी कुछ काम हो रहा है चौखट बनाया जा रहा है तीन लेबर दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा वाला स्टूल पे बैठ के काम कर रहा है।

साइड में एक नर्स भी खड़ी है । दो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ।

इसको क्लॉक टावर भी बोलते है। इसके बिच एक टावर भी है। जिसमे एक तो बहुत बड़ा घड़िल बना हुआ है।